आप लोग देख सकते हैं जो की ये बड़ा फाटक हैं।

सेफ्टी के साथ काम चल रहा है हेलमेट उलमेट लगा के --

झंडा टाइप का गिर रहा है।

नहाने से भी आ इसमें नहाने से भी इतना मज़ा आएगा की मत --

ए वाला मार्किट है जो की आगे पीछे मॉल है।

जो की चटनी उटनी रखा हैं।

मेरा तो मन खुश हो गया देख के।

और एक आदमी जो की ब्लैक कलर में --

केवार है पीछे और एक साइड में एक बड़ा मंदिर है फिर।

जो की दूर-दूर से आदमी पहुँचा हुआ है और यहाँ पे लाइट का भी व्यवस्था हैं अच्छी चमकीला जैसा पाँच छह कलर का जैसा है और वाइट कलर बीच से रस्ता है जो भी गेट है मैन गेट और छोटे-छोटे बच्चे हैं यहाँ पे नीचे में ऊपर में भी है।

जो की प्रदुषण मुक्त होगा और आगे में एक बुढ़वा है जो की साइकिल लेके जा रहा है और आगे मैं बैठने का है।

और यहां पे बहोत बड़ा कंपनी है और जो कि आगे पिचे ट्रैक लगा हुआ हैऔर चारो तरफ से हरा-भरा लग रहा हैऔर पीछे में एक टावर दिख रहे हैंऔर बिजली का खंबे दिख रहा है और आगे से रोड निकला हुआ है और रोड में एक ग्रिल जैसा बड़ा --

और कागज से कुछ डिब्बे-उब्बे बना हुआ है जो की फूल वगैरा बनाया है जो की हर कलर का है यहाँ पे। बहुत ही ब्यूटीफुल सुन्दर लग रहा है देखने में और शायद और भी बनाएगा और फूल-वूल बहुत ही अच्छा कार्टून जैसा बनाया है। बहुत ही सुन्दर लग रहा है प्यारा सा --

और जो की अच्छा लग रहा है देखने में इ जो स्विमिंग पूल में नहाते हैं और आदमी ऊपर से नीचे आता है चढ़ के बहुत ही अच्छा मजे आ रहा है इसमे स्नान करने में और पीछे में देख सकते हैं आपलोग बहुत बड़ा नदी है।